पीछे और एक पहाड़ जैसा दिख रहा है वो पथरीला है।

ये तस्वीर एक झील के अंदर की है जिसमें एक चॉकलेटी कलर के बोर्ड के ऊपर में कुछ सफेद रंग से लिखा हुआ है।

एक बड़ा सा हरे रंग का जनरेटर का बॉक्स रखा हुआ है सामने एक राउंड सा डिजाइन बना हुआ है जो गार्डन जैसा लग रहा है |

तस्वीर एक बहुत बड़ी इमारत की है जो सीमेंट के कलर की दिख रही है इसमें बहुत लम्बे अपार्टमेंट जैसी ये बिल्डिंग है बगल मे एक सफेद--

इस तस्वीर में स्टेज पर दो लड़किया साड़ी पहने कर डांस कर रही है इन्होने सर पर गजरा बांध रखा है एक ने सफेद एक ने लाल --

नारंगी रंग का धुँवा छोड़ रहा है बगल में दो बच्चे कुर्ता पैजामा सफेद रंग का पहन के खड़े है नीचे एक व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है उसने सफेद शॉल पहन रखा है।

कुम्मत का लाल मटके जैसा कुछ रखा हुआ हैं इसमें दो खाने बने है नदी का पानी सफेद है पीछे हरे रंग के बड़े बड़े झाड़ दिख रही है --

अगल-बगल के दिवार का रंग गुलाबी है ऊपर का छत रंग सफेद है बड़े-बड़े जर्मन के पट्टे है।

तस्वीर में एक मोटरसाइकिल का उलटे हाथ तरफ का हेंडल और--

तस्वीर एक रोड के किनारे बने बड़े-बड़े खंभों की हैं यह एक लाइन से बहुत सारे खड़े है बगल में कुछ लोग आपस में खड़े रह कर बात कर रहे हैं।